ऊपर पंखे नजर आ रहे हैं और लाइट भी दिख रही है।

और एक बड़ा सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां पर जंगले दिखाई दे रहे हैं।

और यहां प्रकार दिखाई दे रहे हैं और या फिर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर गली साइड पोस्टर लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर कुर्सी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो गाड़ी ख खुली नजर आ रही है।

यहां पर एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

और वहां पर खंभे नजर आ रहे हैं।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

बहुत सारे आदमी बैठे दिखाई दे रहे हैं खम्भे नजर आ रहे है।

और यहां पर चीजों की दुकान दिखाई दे रही है और यहां पर नीम खड़े दिखाई दे रहे है और यहां पे ईंटों का घर भी दिखाई दे रहा है।